और खंबा भी है उसपे तार भी लगाया गया सोलर लाइट भी लगाया गया है इधर रोड भी है।

पास पर गेट भी लगाया गया है।

साइड पर एक दुकान है बहुत सारे चिजो रखा हुआ है एक कुर्सी भी है।

इसके पास पर एक पेड़ भी है जो हरे हरे पत्ते से भरा हुआ सामने के और एक सीढ़ी भी है दो से तीन खिड़कियां भी बनाया गया है।

इसके साइड पर एक स्कूटी खड़ा किया गया है।

घास भी है सुरुज भी उगा हुआ है।

घर पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एक से दो साइकिल भी रखा हुआ है जो बाउंड्री के पास पे है।

बहुत सारे डेग भी है कुछ उसको साफ सफाई भी कर रहे हैं।

बादल का रंग व्हाइट है।

दो से तीन लोग भी हैं एक ऊपर पे भी बैठे हुए कुछ पेड़ पौधे भी है जो हरे हरे पत्ते फूल लगे हुए हैं।

सामने पर पेड़ पौधे भी हैं घास फूस भी है इधर पक्के का बनाया गया भी--

बहुत सा पक्के का धापत्रि भी बनाया गया है।

फूलों से सजाया गया भी है जो पीछे के वर पर्दे भी लगाया गया है।

इसपे घास भी कुछ लगे हुए हैं निचे रेलिंग दिया गया है जो स्टील पाइप का है एक महिला है जो इधर आ रही है।

यह एक रूम है चौदह से पंद्रह कुर्सियां रखे गया है कुर्सियां का रंग थोड़ा ब्ल्यू है टेबुल भी बहुत सारे है।

एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के नाम टोरी है। उसपर बहुत सारी ए_सी लगा गया है। बाहर पे बहुत सा वायर घिचा गया है।

यहां पे बहुत सारे लोग हैं कुछ दीए भी जल रहे हैं नीचे के ओर हरे रंग के जमीन है।